इसकी पट्टिया बनी हुई है और उसमे डिज़ाइन भी बना हुआ हेंगा पीछे डिक्टैशन बना हुआ हेंगा यंहा एक पोस्टर भी लगा हुवा हे जिसमे ग्रीन कलर का दिख रहा है।

ये पहाड़ी एरिया है यहाँ पर एक झरना बह रहा है ऊपर से निचे आकर साइड पर पत्थर रहेंगे।

बोट है छोटी छोटी जो की किनारे समुद्र के लगी हुई है खड़ी है और यहाँ रास्ता भी है और यहाँ पर जम तक की ज़मीन हेगी इसमे कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हैं कुछ बड़े भी लगे हुए हैं।

घर की बॉउंड्री दिख रही हेंगी वो चीज़ बनी हुयी हेगी बॉउंड्री के अंदर घर बना हुआ है।